बस सब वहाँ के फूले हैं बड़ा सा पोस्टर और लाइटे लगा हुआ है व हरा-भरा पेड़ें आसमान में दिख रहा है।

के लाइन में कब्बो दे है।

और वहाँ पे तिल रोपा हुआ है वहाँ पे झोंपड़ी बनाया हुआ है आसमान में पूरा ब्लैक --

बहुत सारा रखा हुआ है वहां पे चिमनी है आसमान में बहुत सुंदर दिख रहा है।

एक सड़क के बगल में बहुत सारे गाड़ीया लगा हुआ है।

एक पुराना जमाना के बर्तन शीशे मे रखा हुआ है उसमें लाइटें जल रहे हैं कोटरे है अच्छा कटोरा है ग्लास है।

उर रहा है वहां पे होथा बरिया रखा हुआ है और ये मशीन लाइने इ जगह रखी है --

एक चिड़िया है व्हाइट कलर ब्लैक कलर का उसका पैर है रेड कलर का चारो तरफ से --

एक मार्केट है और मार्केट के दोनों तरफ दुकाने है बहुत सारे लाइटें जैसा --

वहां पे मछुआरे नाव में चला रहे हैं बहुत सारे नाव में आदमीए है।

एक फील्ड में तीन क्रिकेटर हैं और ती बल्ला लिया हुआ है और वहाँ खड़ा हुआ है।

उसे घेरा हुआ फूल है ग गमला है वहां पे चारों तरफ हरा-भरा पेड़े हैं फूलों के गमला है वहां।

ब्लू कलर का आसमानी कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है उसके बगल में पीला --

गाड़ियां चार चक्का चल रहा है बाइके चल रहा है आसमान बादले पूरा काला है पुले पे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।